योग करत हउवा कुछ लोग पर्दा लगल ह।

योगा करत हवं बच्चा पार्क में पेड़ पौधा लगल ह।

बोंड्री ह रोड ह घास वास ह।